बैं कअ ऊपर वाले फ्लोड में है और जो है नीचे शटर बगेरा लगै हुये हैं बगल से जो है गेट है इसका बैंक का उ जाने के लिए।

कड़िया से इसको स्त्रित किया गया है इसको--

तस्वीर स्मारक बना हुआ है जो छत के ऊपर है नीचे जो है बरामदा है है इपेसन है इसके चारो तरफ ऊँचे-ऊँचे बिल्डिंग हैं घर बगेरा हैं।